यह यह गांव फाजिल्का जिले में खुड खेड़ा गांव पंजाब में पड़ता है।

यहां पे बच्चे बैडमिंटन खेलते है जिसे हम चिड़ि बल्ला भी बोल देते हैं।

होटल के अंदर की फोटो है जिसमें रात के समय में लाइट जली हुई है कुछ लोग बैठे हैं।

हेलो दोस्तों जैसा कि हम इस फोटो में देख पा रहे हैं कि यहां पर एक ट्रैक्टर खड़ा है और एक ट्राली खड़ी है।